और काफी सारे मकान बने हुए है बिजली विघुत विभाग वाले खम्भे भी निकले हुए है उसकी तार भी निकली दिखाई दे रही है कुछ यहाँ पर लकडियां भी डली हुई है झाडियां भी लगी --

हमें यहाँ पे एक तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है उसे तालाब में बहुत ज्यादा अम्म उम्म नाव रखी हुई है और पक्षी भी उड़ रहे है जो की दिखने में बहोत अच्छे लग रहे है मुझे यह नज़ारा बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहा है।

उस नाव में बहुत ज्यादा ल अ व्यक्ति बैठे हुए है कुछ औरतें भी दिखाई दे रही है और कुछ बुजुर्ग भी लोग बैठे है बच्चे--

हमे यहाँ पर एक कल्चरल पूल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसका पानी नीले कलर का लग रहा है।

हमे यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है और बोहत सारी भी सड़के निकली हुई है और बोहत सारी जीपे भी रखी हुई है टैक्सी दिखाई दे रही है जिसमे एक व्यक्ति चला रहा है और एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा हैं बोहत ही बड़ा मंदिर बना हुआ हैं जो कि दिखने में बहोत ही अच्छा लग रहा हैं।

पीछे कुछ ज्यादा मकान बने हुए है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि अपने मोबाइल में देखें--

जो जिस पे ल बहोत जो पुल बहोत दिखने में ऊंचा लग रहा है और खम्मा भी लगा हुआ है जिस के तार निकले हुए है और हरे-भरे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँं पर एक बोहत ही बड़ी दुकान दिखाई दे रही हैं जिस दुकान में वो अन्य प्रकार की चीजे रखी हुई हैं और खरीदने वाला सामान भी रखा हुआ हैं।

वहाँ पर एक छोटा बच्चा लिए महिला खड़ी हुई है और एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है और गमले में सुंदर - सुंदर फूल भी दिखाई दे रहे है जो कि दिखने में बहुत सुन्दर लग रही है।

बोहत ज्यादा खिड़की बनी हुई दिखाई दे रही हैं जोकि अलग-अलग डिज़ाइन में बनी हुई हैं जोकि बहोत ही दिखने में सुंदर लग रही है और कु-वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कुछ गमला दिखाई दे रही जी वहाँ पर--